बहुत अच्छा ये घर है बहुत अच्छा लग रहा है ये घर को देख के --

आजू-बाजू लोहे से गेट बना हुआ है। किले के आजू-बाजू किले को देख के मुझे एक पुरानी बात याद आ जब हम छोटे थे तो हम किले मे जाया करते --

हमें दीवाल पे एक पोर्ट पी --

ये शाम के समय का चित्र दिख रहा है। चित्रक में हमे छोटे-छोटे घर भी नज़र आ रहे है जो नदी के किनारे झील के किनारे बने हुए हैं।

आजू बाजू बहुत सारे पत्थर है। पत्थर पे हरे काले धब्बे से हैं।

यह चित्र ये चित्र मंदिर के अंदर का है जिसमें भगवान खड़े हैं।

डाकघर का यह डाकघर का बोर्ड न लगा हुआ है।

और हमें इमारते भी दिख रही है इमारते काफी बड़ी हैं।

वहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो बूक लेने के लिए खड़ा होगा --

जा पे स्कूल का कुछ प्रो-अं-फंगक्शन हो रहा है।

और जिम में बहोत सारे हमें यंत्र दिख दे रहे हैं जो वयं करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

अ पकछिया का कलर अ सफेद और कत्था है।

एक गुलाबी कलर का शर्ट पहना है एक सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है।

काफी जमा दिख रहा है। एक ऑटो दिख रहा है। एक बाइक दिख रही है। बाइक पे आदमी बैठा हुआ है।

लाल गुलाबी नीला हर रंग उसमें दिखा दे रहा है।

यहा चित्र हमे बस स्टैन्ड का दिख रहा है बस स्थान का दिख रहा है।

और यहाँ पे उपर उसके लोहे के वो समान भी रखा हुआ है।